इस फोटो में मुझे एक कार का शोरूम दिखाई दे रहा है जहां पास कार को--

यहां पास कुछ लोग खड़े हुए हैं चारों ओर--

यहीं साथ में कुछ लोग खड़े हुए हैं तीन से चार लोग यहां बैंक के बाहर खड़े हुए हैं बैंक के बाहर एक कैमरा --

दुकानों के पास बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और साथ में खाद बीज की बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं यहां पर बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं चारों ओर सामान रखा हुआ है।

यहां पर बहोत सारे पैकेट में दवाइयां रखी हुई है।

यहां पर बहोत सारी कुर्सियां रखी हुई है साथ में यहां कुछ--

बहोत सी नाव तैर रही हैं कुछ बाइक यहां पर खड़े हुए हैं बाइक के पास बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।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

के साथ कैमरे लगे हुए हैं और यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।